घर दिखाई दे रहा है पहाड़ के पास एक सरक बनाई गई है सरक --

पोथी में लगाया गया है और इसमें कई सारे लाइट जल रहे हैं इसमें कुछ सी.सी.टी.वी. कैमरा भी --

गार्ड के पीछे कंधो पे एक गन लगी हुई है और यह बैंक की शाखा है।

और इस कमरे में कई सारे एयर कंडीशनर एवं लाइटस जलती हुई दिखाईं दे --

एक रिसेप्शन काउंटर भी बनाया गया है रिसेप्शन काउंटर के अंदर एक लोग खड़े --

ओम करण एंड इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट ऐंड टेक्नोलॉजी इसके बाहर कई सारे वृक्ष एवम छोटी-छोटी --